जिस पर तीन कुत्ते पड़े हुए हैं।

और एक सरकारी नलका भी है और यहां पर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

इस मछली की दुकान में तरह तरह की मछली है।

और यहां पर दो महिला मछली बेच रही हैं।

और बेड देखने में बहुत खूबसूरत है।

और यहां पर कुछ आदमी पेट्रोल पंप पे तेल भी डला डलवा रहे हैं।

जिन पर कुछ व्यक्ति बैठे हैं और कुछ टेम्पू के बाहर खड़े हुए हैं।

और पारक में एक छोटी सी दीवार भी है।

इस चित्र में कोई रेड कलर का स्कूल वगैरह है।

इस चित्र में फर्नीचर का समान है।

और यहां पर गद्दे वगैरा भी पीछे हुए हैं।

इस चित्र में एक नदी है।

और यहां पर अन्दर चेयर भी कुर्सी वगैरा भी रखी हुई हैं।

और इनके आगे भी है।

जो कि बिजली से चलता है प्रेस वगैरा--